सामने एक बारकोड लगा हुआ है।

लाइट दिखाई दे रही हैं रोड दिखाई दे रही है।

प्लेटें दिखाई दे रही है और अन्य सामान दिखाई पड़ रहा है।

लोहे का एक बड़ा दरवाजा दिखाई दे रहा है।

यहां पर मुझे एक सैलून की दुकान दिखाई दे रही है।

यहां पर एक शादी की डेकोरेशन की गई है।

यह एक बहुत सुंदर टेबल दिखाई दे रही है।

यह एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है।

तीन आदमी दिखाई दे रही है एक ठु बल्ब दिखाई दे रहा है बाहर कांच का शीशा दिखाई दे रहा है।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

बहुत सारी लड़ियां दिखाई दे रही है।

दीवार पर कुछ पोस्टर चिपके हुए हैं।

पीछे कुछ लकड़िया दिखाई दे रही है एक डब्बा दिखाई दे रहा है।

डब्बों पर कुछ लिखा हुआ है तार छपी हुई है।

यह एक लड़की की मेज दिखाई दे रही है।

टेबल दिखाई दे रही है चेयर दिखाई दे रही है।

यह एक जिम है इसमें कुछ मुझे कुछ आदमी दिखाई दे रहे हैं।

बेंच दिखाई दे रही है। रोड दिखाई दे रही है। डम्बल दिखाई दे रहे हैं।

एक गमला रखा हुआ है ऊपर कुछ लिखा हुआ है।

बिल्डिंग पर बहुत सारे कांच के शीशे दिखाई दे रहे हैं एक डस्टबिन रखा हुआ है।

दो डंडे दिखाई दे रहे हैं कुछ सामान रखा हुआ है सामने कुछ पहाड़ दिखाई दे रहे हैं।

लड़के भी दिखाई दे रहे हैं कुर्सी दिखाई दे रही है।

बाहर कुछ मैट पड़ी हुई है।

आदमी दिखाई दे रहे है कार दिखाई दे रही है।

इसके ऊपर लड़ियां लगी हुई है बहुत अच्छी लड़िया लगी हुई है।

यह एक बहुत बड़ा कपड़ों का शोरूम दिखाई दे रहा है जिसके अंदर बहुत सारे कपड़े हैं।

पीछे का दरवाजा दिखाई दे रहा है मेज दिखाई दे रही है कुर्सियां दिखाई दे रही है।